हाँ यहाँ हम देख पा रहे है की यह एक चिल्ड्रेन पार्क है जोकि बहुत सुन्दर बनाया हुआ है और यह देखिए बच्चें झूलने वाला झुला भी है इस में और ये-- .

है उसको सजाया जा रहा है लग रहा है कोंई--

डैम है जहाँ की--

यहाँ हम देख रहे है की यह बच्चें जो है अपने अपने हाथ की कला और कुछ काग़ज हाथ में लिए हुए है और बनाना चाह रहे है। .

परफेक्ट फ्रीलांस सेंटर है और यह इसका मेन गेट है मेन गेट जो उसके सामने एक साइकिल है।